यहां हम देख सकते हैं कि यहां पर गाड़ीयां ठीक की जाती हैं।

यह हम देख सकते हैं कि यह एक कपड़े की दुकान है यहां पर जेंट्स की काफी सारे टी-शर्ट टंगी हुई हैं।

सामने एक बड़ा सा शीशा लगा है।

एक लाल रंग की गाड़ी और एक टूटी हुई गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है।

जो यहां से निकलते हुए दिखाई दे रही है।

काफी सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे हम यहां देख सकते हैं।

एक औरत या आदमी यहां पर खड़ा हुआ है जिसने नीली टी शर्ट पहनी हुई है।

डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहां लिखा हुआ है।

यहा हम देख सकते हैं कि यह एक ढाबा है जिसका नाम सिंधु ढाबा है यहां पर ब्रेकफास्ट लंच डीनर स्वीट्स लिखा हुआ है।

कुछ पतीले यहां पर पड़े हुए है और--

यहां पर वाइट कलर के सोफे गोल्डन कलर की काफी सारी कुर्सियां लगी हुई है।

यहां पर लड्डू पेड़े बर्फी वगैरह पड़ी हुई है।

शीशे का दरवाजा यहां पर बनाया गया है।

और यहां पर दो पब्लिक चेयर्स पड़ी हुई हैं जिन पर कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

उसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है।

यहां पर काफी सारी सब्जियां घीया बैंगन तोरी गोभी टमाटर--

यह हम देख सकते हैं कि यह एक बहुत ही बड़ा हॉल है जिसमें लकड़ी के बेंचेज लगे हुए हैं।

यहां हम देख सकते है कि यह एक जिम का दृश्य है यहां पर एक्सर्साइज मशीनें पड़ी हुई है हरे रंग का मैट यहां पर--